यह इमेज दर्शा रहा है कि एक मीटिंग होल है | जिसमें कई सारे है औरतें आदमी बैठकर भाषा को किसी भाषा को सुन रहे हैं |